कबर्ड दिखाई दे रहा है। और एक स्टील का रोड दिखाई दे रहा है। सीलिंग फैन नजर आ रहा है।

कुछ आइसक्रीम दिख रहा है जो की चेरी डाला गया है। उसके ऊपर और भी कुछ डाला गया है। जिसमें एक पिंक कलर की है एक येलो कलर की है एक वाइट कलर की है।

दिखाई दे रहा है जहां शॉपकीपर बैठे हुए नजर आ रहे है चेयर पर चेयर के ब्राउन कलर का है।

एक छत के ऊपर जो है वो लोग योगासन करते हुए नजर आ रहे है बिछाई गई है जिनमे ग्रीन कलर की है पिंक कलर की है पर्पल कलर की है।